उस फाउंटेन के आस पास काफी सारे लोग भी दिख रहे हैं।

और ऊपर में कुछ लाइट्स भी लगी हुई है।

और सामने एक ट्रक भी खड़ी हुई है।

मुझे इस पिक्चर में एक सब्जी मार्केट दिख रही है।

बस एक चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है।

चेयर और टेबल्स ब्लू कलर की है।

कुछ लड़कियां साइकिल चला रही हैं।

वहां वॉटरफॉल काफी सुंदर लग रहा है।

आस पास कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

वह कंस्ट्रक्शन किसी घर का हो रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक बड़ी सी नदी दिख रही है।

मुझे इस पिक्चर में एक मंदिर दिख रहा है।

स्विमिंग पूल खाली है और सामने कुछ चेयर्स और--